और ये गोल्ड की आ असली सोने की मूर्ति है यहाँ पर बहुत उम्म बहुत मान्यता है यहाँ पर कोई भी मान्यता मांगे जरूर पूरी होती है।

जो श्याम का फोटो है जो की अवैलबल है और यहाँ पर हर तरह के मूवी लगते रहते है और अपनी फॅमिली के साथ बच्चे के साथ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी के साथ आकर के मूवी इन्जॉय कर सकते है।